यहाँ सड़क के किनारे रिक्शा खड़ा हुआ है।

अ घर के बीचो-बीच में बहुत पेड़-पौधे लगे हुए है पेड़-पौधों का एकदम गुच्छा-सा दिखाई दे रहा है।

औं घर के चारों तरफ भी ए बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं ओ बिजली के तार दिखाई --

लड़का दिखाई दे रहा है जो थोड़ा सा झुका हुआ है ।

यह एक होटल सा मालूम पड़ रहा है।

पुल के किनारे ए थोड़ा सा मिट्टी की सड़क है जहाँ पर बिजली का --

और नीचे हरे काली हरे रंग का कालीन बिछा हुआ है ।